इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग की दिखाई दी गई है आप देख --

इस इमेज में हमें कंप्यूटर लाइब्रेरी की पिक्चर दिखाई गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम बना हैं।

ओरेंज कलर से बना हुआ है।

ये शॉप को में हमे यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रहे है कुछ कंडोम पैकेज दिखाई दे रहे हैं कुछ चॉकलेट दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमे एक एक स्टेशन के पिक्चर दिखाई गई है यह आप देख सकते है यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है।

भईया आप देख सकते है यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बना है इसके आस-पास में यहाँ पेड़-पौधे नज़र आ रहे है।

आस पास में हमें ये रोड दिख रहे --

इन्होने अपने फेस पे मास्क पहेन रखा हैइन्होने ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहेन रखा है।

मैदान के आस-पास हमे काफी सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं इस मैदान के चारो तरफ हमे यहाँ एक--

ये जो साड़ी है वो पिंक रेड ग्रीन ब्लू पर्पल कलर्स है हमे यहाँ दिखाई गई है।

और ये जो साड़ी के ऊपर यहाँ गोल्डन कलर से केरिया बनी हुई है इनका डिज़ाइन काफी सुन्दर यहाँ नज़र आ रहा--

इस चठान के बाजु में हमें यहा कुछ इमारते दिख रही है कुछ छोटा-छोटा दीवार टाइप में दिखाई दे रहा है।

फ्रेंड मे अभी यहाँ पे ओपनिंग हुई है कुछ न कुछ यहाँ पे बल्लूंस दिखाई दे रहे हैं।

बॉयज यहाँ पर ही जो उसके हेयर काट रहे है यह पर कुछ चेयर लगी हुई है ।